जिसमें घास बहोत ही लगा हुआ है साथ में बड़े बड़े वृक्ष--

लगे हुए हैं बहुत ही बड़ा खेत है बहुत ही अच्छा--

ये दुकानें बहुत ही बड़ी हैं जिसमें सीमेंट का--

ट्रीटमेंट दे रहा हैं बहोत--

हुई है जो कि आदमी एक उसको वाश --

का समान रखा हुआ है।

अलग अलग तरह के ये कपड़े रखे हुए हैं।

बुक्स स्टोर की पिक्चर है।

है बहुत ही अच्छी पार्क बनी हुई है।

ये बहोत ही बड़ा शोरूम हैं।

ये एक स्टेशनरी की बहोत ही बड़ी दुकान है।